यहां कुछ खंभे भी गड़े हुए हैं।

यहां पे काफी सारे बैलून से जिनमें से सफेद और नीला भी है।

यहां काफी सारे रंग बिरंगी लाइटें जल रही है।

एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

यहां नींबू रखी गई है तथा यहां पे प्याज तथा मिर्चा भी रखी गई है।

यहां दीवार का रंग पीला रंग से रंगा हुआ है।

दीवार का रंग सफेद रंग से रंगा हुआ है।

यहां पे बांस के बंबू रखे हुए हैं।

यहां पे बिशप स्कूल लिखा हुआ है।

यहां पे लोहे के रेड भी निकले हुए हैं।

आसमान साफ तथा नीला नजर आ रहा है।

यहां पे रखने के लिए डब्बे भी बनाए गए हैं।

इस तस्वीर में कुछ चिकन तंदूरी रखी गई हैं।

यहां कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

यहां बैठने के लिए बहुत अच्छी टेबल रखी गई है।

यहां पर योगा करने के लिए मैट बिछाया हुआ है।

यहां पे माजा के बोतल तथा कोका कोला के बोतल भी है।

आसमान साफ तथा नीला दिख रही है।

यहां पे गुप्ता भंडार लिखा हुआ है।

यहां लोहे का ग्रिल लगाया गया है।

तस्वीर में काफी सारे लोग हैं जिनमें से कुछ महिलाएं तथा पुरुष है।

यहां पे पानी के बोतल्स है यहां एक लड़की को सम्मानित किया गया है।

यहां पे सूखे हुए पत्ते भी गिरे हुए हैं।

यहां पे कुछ फूल भी उगे हुए है।

यहां पे गाड़ी के टायर भी दिख रही है।

यहां पे सब्जी भी रखे हुए जिनमें से पत्ता गोभी भी है।

यह एक सड़क का तस्वीर है सड़क में मिट्टी तथा सूखे हुए पत्ते गिरे हुए हैं।